पहाडे है उसके ऊपर बादल है एक खंबा है जिसे बहोत से तार लपटि हुई हैं और खंभे के नीचे रेड कलर का घर है फिर बाउंड्री बैगनी कलर का है।

अखबार लगा हुआ है और उसके ऊपर बहुत सारा जामुन दिख रहे हैं अखबार में एक बच्चे का तस्वीर भी दिख रहा है जिसकी सिर्फ आंखें दिख रही हैं।

इसमें लिखा हुए अरुन्दति गुहा एक लाठी भी दिखा रहा है जो पत्थर के उस साइड में रखा हुआ है ।

इस इमेज में मुझे गैरेज दिख रहा है जिसमें कारें पार्क होती है एक लंबी सी कार दिख रही है साइड में एक आदमी

ये इमेज में मुझे एक टोकरी सा कुछ दिख रहा है उसके ऊपर झूर झूरी का --

एक पहाड़ दिख रहा है जो बहुत हरा-भरा है छोटे-छोटे पेड़ों से दो टावर दिख रहें हैं और छोटे-छोटे घर दिख रहें हैं एक ब्लू कलर के घर दिख रहें हैं वाइट --

घर दिख रहे हैं और झाड़ियां भोत दिखाई दे रही है और बादल तीन कलर के दिखरे है व्हाइट ब्लू और व्हाइट ।

वो लड़की है जो घूमने वाला कुर्सी है या फिर तीन सर्कल लाइट दिख रही है फिर साइड में एक सोफा भी दिख रहा है।

इस इमेज में मुझे एक मंदिर का दुआर दिख रहा है जो पिलर जसे है लम्बा वो रेड कलर का है साइड में छोटा सा घर दिख --

साइड में लंबी सी टावर है उधर के लपेटे दिखाई दे रही है फिर साइड में बैठने के कुछ जगह है फिर ऊंची-ऊंची पहाड़े दिख रही है।

पेड़ हैं और बस दिख रहें हैं दूर-दूर उस पर छोटे-छोटे बच्चे दिख रहें हैं फिर ग्राउंड दिख रहा है।

इस इमेज में मुझे एक झील दिख रहा है जो साइड { में एक नाव है और तीन औरते हैं एक आधे पानी में डूबी हुई है दो जाने वाली है। }

एक आदमी है जो पत्थर के ऊपर बैठा गया है ऊपर से तार की लपटे दिखाई दे रही है और कुछ पानी के उस --

उसके पार करने जंगल दिख रहा है और उस के पार मिट्टी छोटे-छोटे पत्थर दिख रहें हैं साइड में छोटे-छोटे पेड़ भी दिख रहें हैं।

इस इमेज में मुझे रेस्टोरेंट दिख रहा हैरेस्टोरेंट में दो खाना आया है एक वाइट सॉस पास्ता एक चौमिन --

कोला भी है साइड में टिशू पेपर लिखा गया है साइड में मेनू भी है और चाऊमीन के ऊपर चम्मच दिया गया है।

ये इमेज में मुझे झीलें दिख रहीं हैं जो साइड में पथेरे दिख रहें हैं जो काले कलर की है।

पार बड़े-छोटे घर दिख रहे हैं एक लंबा सा पिलर दिख रहा है साइड में घरों के साइड में --

घने जंगल दिख रहें हैं जंगल के ऊपर शैडो दिख रहा है शैडो के ऊपर बादल दिख रहा है ।